जो कि एक छोटे से टापू पर बने हुए हैं।

दीवार हैं यह मट्टी के बनाए हुए उम्म स्ट्रेचर हैं ।

-- का पेंट बहुत पुराना हो चुका हैं।

एंड यहाँ पर दो पिलर लगे हुए है जिसमे ऊपर छत --

एक सड़क जा रही है जो की पत्थरों की --